यही एक नदी है। यहाँ पे पुल है। पुल पे एक आदमी खड़े हैं।

नहाना तो नहीं सक नहाने के लिए तो नहीं बोलेंगे।

यह एक पार्क है। यहाँ स्कूल के बच्चे है। यहाँ घूमने के लिए आए हैं। गार्डन टाइप का है। फुहारा वगैरह भी सब लगाया है। वाटरपार्क जैसा लगा है।

बाकी सब लोग ट्रेन का वेटिंग कर रहे हैं वेट कर रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर दो पर शायद कोई ट्रेन आने वाली है अभी।